ऊपर बहुत सी किताबें कुछ पैन और इत्यादि समान रखा गया है।

नीचे की तरफ अंदर की तरफ कुछ जाल लगाया गया है।

यहां पर पीले रंग से उसकी सजावट की गई है।

जिसके ऊपर की बॉडी हटा दी गई है।

एक मशीन रखी गई है सामने की तरफ दीवार ग्रे कलर की है।

एक ऊपर की तरफ एक रिमोट सा है बराबर में खिड़की लगी है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे तथा एक बड़ी सी सीढ़ी जीना दिख रहा है।

नीचे की तरफ बहुत सारा पानी है यहां पर पहाड़ियो के बीच से झरना बह रहा--

इन रैक पर कुछ सामान रखा गया है एक बड़ी सी टेबल है।